यहां सड़क पर बाइक खड़ी हुई हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है। बिजली का खंबा --

अ ओ ऑफ व्हाइट कलर में है और चॉकलेट कलर का बॉर्डर बना है। बिल्डिंग पे एस --

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कलर में है।

बड़ी सी फील्ड है। कुछ कच्चे मैदान हैं। कुछ पर घास निकली हुई हैं पत्ते दिखाई दे रहे --

एक व्हाइट कलर का है। एक येलो कलर का बोर्ड है। व्हाइट कलर के बोर्ड पर लिखा है आ हाउस ऑफ़ --

इसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है सिलाइडिंग वाले झूले दिखाई दे रहे हैं।

उनके गलों मे माले पड़े है जोकि रेड ओर येलो कलर का फ्लावर मे है।

जो कि ब्लैक कलर में है उसके पीछे एक बोर्ड लगा है जोकि कत्थई कलर में है।

एक आदमी खड़ा है जिसने येलो कलर का शर्ट पहन रखा है।

यह एक चर्च की तस्वीर है।

तिगड़ी पर ग्रीन कलर की लाइटिंग बनी है। गेट को भी ग्रीन कलर की लाइटिंग से सजाया गया है।

सामने एक बहोत ही सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ कुछ पौधे भी नजर आ रहे है। दूर बड़े-बड़े हरे-हरे पेड़ नजर आ रहे है।

गोल्डेन कलर की गुम्मत है।

पड़ाका जलता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ स्नैक्स भी लटके नजर आ रहे है। सामने एक ग्रीन कलर की क्लीफ़ भी है।

आपको उसको चारों तरफ गुमच्छ भी बने हुए हैं।